इस फोटो में दिखाया है कि यहां पर--

ये एक लड़का जिम में प्रैक्टिस करता हुआ है औ--

चारी की बोतल रखी हुई है। एक दुकान है जिसके अंदर शीशे के यहां रैक बने--

हैं जिसके अंदर यहां एक पानी की पाइप गिरी हुई है।

आ पर बहोत सारे पेड़ पौधे से यहां कुछ आ--

इस फोटो में दिखाई दिया है कि यहां पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं।

दो मोटरसाइकिल है एक बुलेट है एक स्प्लेंडर है और एक स्कूटी यहां पर खड़ी है।

यहां पर झंडे ही झंडे यहां प--

अलग अलग ड्रेस पहन कर बैठी हुई है।

वे गाये बैठी हुई भी दिखाई दे रही--

ट्री बनी हुई है। जो लाइटों से--

पाठ रखी हुई है और भी बहुत सारा यहां पर समान--

यहां पर एक ट्रक आया हुआ है जिसके ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है और यहां पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली है।

है यहां पर शूज ही शूज दिख--

देखा नई गया यहां पर ये पिंजरा सा लोहे--

पुराना ट्रैक्टर आईसर खड़ा हुआ है।